और बूट्स भी दिख रहे हैं हाथ के ग्लव्स भी दिख रहे हैं और इस--

इस पिक्चर में मुझे मतलब एक फैन दिख रही है लाइट्स दिख रही है मुझे और यहां पर बड़े-बड़े टेबल्स से टेबल्स के --

और यहां पे कुछ खंबे भी दिख रहे हैं मुझे जो हर जगह एक कुछ हरा-हरा चीज है।

ग्रीन ग्रीन कलर का घास भी है कुछ पत्थर भी है और उसके --

यहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ भी हैं और वो येलो बिस्किट कलर येलो कलर की वाइट कलर की है और रेड और ग्रीन कलर की है और इसमें --

ये कुछ वाइट कलर की चीज़ दिख रही है और यहाँ पे मुझे एक मस्जिद सा दिख रहा है और आसमान दिख रहा है जिसमे आसमान में कुछ बना हुआ है और यहाँ पे मस्जिद में बहुत सारी खिड़कियाँ है और यहाँ पे--